इस पिक्चर मे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें काफी सारी टेबले और कुछ कुर्सियां भी लगी हुई दिख रही है।

और ऊपर की तरफ कुछ बैलूंस भी लगे हुए दिख रहे हैं।

जिसमें एक काउंटर बना हुआ है जोकि लकड़ी का है और उसके ऊपर एक कांच भी लगा हुआ है और काउंटर के ऊपर एक फ्लावर का --

पास में एक हिमालया की शॉप भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक काफी बड़ी मशीन दिखाई दे रही है।

और मशीन भी लोहे की है आस पास चारों तरफ दीवारें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

दीवार के पास कुछ लकड़ी के ड्रॉज बने हुए हैं जिसमें काफी सारे--

किनारे पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं पेड़ एक लोहे की जाली--

ये एक हीमारदी आयुर्वेद की शॉप है जहां पर काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यह एक ढाबा है जिसका नाम मिकी दा ढाबा है जिसका बोर्ड काफी बड़ा लगा हुआ है और यह वेज एंड नॉन वेज दोनों यहां पर मिलते हैं।

अ बोर्ड के ऊपर कुछ खाने पीने के डिशेस के भी--

और काफी सारा मेकअप और ज्वेलरी भी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

फिसल पट्टी के ऊपर दो बच्चें फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और डॉक्टर द्रप्ती जैन का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

शॉप में काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर पिज़्ज़ा बर्गर के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में एक संघ वन इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

टेबल पर सफेद कलर के कपड़े बिछे हुए हैं और कुर्सियों पर भी--

एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर नो रिटर्न नो एक्सचेंज लिखा है।

और पास में ही कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

पास ही में एक सफेद कलर का फ्रिज भी रखा हुआ है।

एक पानी का वाटर कूलर और कुछ गिलास भी जमे हुए हैं।

प्यारा रेस्टोरेंट जैसा दिखाई दे रहा है।

आस-पास भी कुछ लोहे के इंगल जैसे झूले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीली कलर की वेन भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है पास ही में एक कार भी खड़ी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और कार के--

करा हुआ है एक दीवार पर लकड़ी के कुछ कबर्ड बने हुए हैं।

इस पिक्चर में कुछ लड़कियां नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं लड़कियों ने काफी कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं।

पिक्चर में एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारा--

इस पिक्चर में एक चौराहा दिखाई दे रहा है और ऊपर एक ब्रिज भी बना हुआ है चौराहे पर--

और बाहर कुछ बच्चे और एक औरत भी--

पिक्चर में एक काफी बड़ा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है।

आस-पास कुछ खिड़कियां जैसी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।